कार दिखाई दे रहा है।

इसमें हमें बहोत सारी गट्टी पड़ी हुई नज़र --

यह दृश्य हमें एक बैंक का दिखाया जा रहा है।

यह किसी स्कूल का रिसेप्शन हॉल है।

स्कूल का नाम इखिल आर्ट स्कूल है।

हमें और भी पशु नज़र आ रहें हैं।

इस दृश्य में हमें एक घर दिखाई दे रहा है।

घर पूरा लाइटोंसे सजा हुआ नजर आ रहा हैं।

पड़ी हुई नज़र आ रही है।

मिट्टी की सड़क दिख रही है।

बेंचेस पर बहुत सारी स्टूडेंट्स --

स्टेज में हमें कोई भी व्यक्ति नजर नहीं आ रहा--

कमरे में हमें बेड पड़ा हुआ दिख रहा है।